और पंडाल में फूल के माले लगे हुए हैं।

पानी के बोतल रखे हुए हैं।

ये एक मैदान दिखाई दे रहा है।

ऊपर सीढ़ी है और एक बिल्डिंग है।

यहां पर शादी का पंडाल लगा हुआ है।